यहाँ एक सिस्टर खड़ी हुई दिख रही है टेबल रखे हुए दिख रहे है बच्चे दिख रहे है बुक रखी हुई दिख रही है कैची दिख रही है कागज़ दिख रहा है।

यहाँ एक ख्रिश्चन सेंटर दिख रहा है लकड़ी का गेट दिख रहा है पेड़ यहाँ दिख रही है दो खिड़की दिख रही है जाली लगी दिख रही है उपर प्लस बना दिख रहा है।

यहाँ एक डंडा लगा हुआ दिख रहा है पीछे दिवार दिख रही है खिड़किया दिख रही है काच लगे हुए दिख रहे है उसमे लोहे के डंडे लगे हुए दिख रहे है पेड़ दिख रहे है।

यहाँ रेत दिख रही है गिट्टी दिख रही है सीमेंट दिख रही है जेंट्स खड़े हुए दिख रहे है बोरी दिख रही है टोपली दिख रही है बाल्टी रखी हुई दिख रही है।